फोटो में एक वॉटरफॉल दिखाई दे रहा है जिसमें पानी का फव्वारा लाल पीले हरे कलर के और पीछे कुछ तारों में एक लाल खंबा ऊपर आसमान भी नजर आ रहा है।

फोटो में दो पहाड़ों के बीच से गिरती हुई पतली पानी की एक धार जो एक है झरने में नीचे जाकर गिर रही है कुछ लोग घूमते नजर आ रहे है।